यहाँ एक फंक्शन है पार्टी हो रही है ये एक छोटा सा रेस्ट्रॉन्ट है जहाँ एक पार्टी रखी गई है।

ऊपर ला व्हाइट कलर की लाईटिंग हैं। अंदर पूरे मेंन गेट पे भी लाइट लगी हुई है दो डोर हैं अंदर जाने आने के। ये बाहर से मेंन गेट है।

जोकि काफी सुन्दर लग रही है ये एक आदमी ख बैठे हुए है यहाँ देख रहे है वहाँ एक मेन गेट है अंदर जाने का घर हैं।

दुकाने हैं बड़ी बड़ी ये बैंक हैं जो सामने एक ए.टी.एम है। ए.टी.एम के बाहर गार्ड खड़े हैं।

बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। एक व्हाइट कलर का बोर्ड अपने साथ लेके आए --